और बड़ी सी एक नदी है सामने यहां पर--

यहां पर दिन का समय है सामने यहां पर एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए हैं।

ठीक है सामने बैठने की जगह है वहां पर एक अंकल बैठे हैं उन्होंने कैप लगाया हुआ है।